सामने दिख रहा है कि यहां पर ये कोई घर का कमरा है जिसमें दो कुर्सी प्लास्टिक की रखी हुई है और दो कुर्सी और है।

का पुतले को कपड़े पहनाए हुए हैं हरी टी शर्ट और जींस और इसलिए इसमें पंखे लगाए हुए हैं दो ए_सी नजर आ रही है।

और उधर सब्जी की दुकान लगी हुई नजर आ रही है उसके पास काफी सारी गाड़ियां खड़ी है दो टैक्सी दिख रही है पीछे से एक टैक्सी और आ रही है।

सामने दिख रहा है कि यहां पर ये कोई एक बड़ा सारा तालाब है इस तालाब में कई नावे चल रही है और तलाब के किनारे दो व्यक्ति --

इसमें अलग अलग प्रकार के समान रखे हुए है और इस दुकान के छत मे पंखे व लाइटें लगाई हुई है।

सामने दिख रहा है कि यहां पर कोई धर्मशाला है इस धर्मशाला के आगे ही बोर्ड लगा हुआ है जिसका नाम माहेश्वरी धर्मशाला दिखा है।

इस दुकान में काफी प्रकार के अलग-अलग टायर दिख रहे हैं गाड़ी के भी और मोटरसाइकिल के भी टायर नजर आ रहे हैं। इस दुकान में काफी प्रकार के अलग-अलग टायर दिख रहे हैं गाड़ी के भी और मोटरसाइकिल के भी टायर नजर आ रहे हैं।

मालिक है वो अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और एक आदमी है जो एक दुकान के मालिक से बातचीत कर रहा है।

सामने दिख रहा है कि ये कोई मकान का ये कमरा हैं और इस कमरे में ए_सी लगी हुई दिख रहीं हैं।

सामने दिख रहा है कि यह कोई परचून की दुकान है।

एक मैडम है जो आगे खड़ी है और बाकी सारी लड़कियां उनके सामने बीच में स्टोल लगी हुई है और पीछे खड़ी हुई है और अ सामने एक कुर्सी रखी हुई नजर आ रही है।

जहां पर सवारियों को बस उतारती है और--

और नीचे पुस्तक भंडार के ऊपर जय माता दी नाम लिखा हुआ है और नीचे एड्रेस दिया हुआ है जिसमें दो व्यक्ति खड़ा है एक दुकानदार मालिक है।

और यह बिल्डिंग रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग लग रही है उसका मेन दरवाजा उधर दिख रहा है जिसमें एक पीला सा बोर्ड लगा है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है।